इस इमेज में हम देख सकते हैं हमारे सामने बहुत ही खूबसूरत और बड़ा सा फील्ड है जिसमें घास- फूस वगैरा भी निकली हुई है और ये मिट्टी भी है।

इमेज में देख सकते है हमारे सामने आर्यावर्त बैंक है जोकि बहुत ही खूबसूरत और डिजाइनर द्वार बना हुआ है ये ये दो तल्ले का है।

एक मस्जिद है जो कि मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है और यहाँ पे मुस्लिम भाइयों लोग नमाज किताब पढ़ने जाते हैं।